और वो मास्क लगाए रखा हुआ है।

और बोहुत सुंदर ये बैंक है जिसमे पैसे निकाले जाते हैं। बहुत प्रकार के इसमे आदमी आते हैं।

वहाँ पर एक तालाब है जिसमे बोहुत सारी लड़कियां लड़कों और भी निहार रही है और बोहुत सारे पेड़ हैं। सुंदर-सुंदर तालाब है और एक लड़का खड़ी हुई है।

देखिए एक लड़की और एक औरत खरीद रही है जो लाल कलर ब्लाउज और नीला कलर साड़ी पहनी हुई है लड़की भी है।

एक आदमी सीढ़ी से झांक रहा है और औरते लोग उतर रही है। यहाँ पे सुन्दर महल जैसा दिखने में लग रहा है।

व्हाइट व्हाइट कलर का महल जैसा बना हुआ है और बोहुत सुन्दर सा --